यहाँ पे लाइट सब भी लगा हुआ है।

उपरा से पानी दिया जा रहा है। उसके --

लाते हैं चढ़ाते हैं अगरबत्ती सब भी --

दिक्कत होता है। हमलोग खरीद के बर्तन ले जाते हैं घर में यूस कर करने के लिए।

इस नदी का नदी मे नहाते हैं कपड़ा धोते हैं।

पत्थर जो की घास बीच मे घास --